सामने एक लाल रंग का चुंदरी ओढ़े हुए औरत दुपट्टा ओढ़े हुए औरत भी है और एक सामने में आदमी भी है।

यहां दो सोफा भी ह होटल के बाहर एक कार्ड भी है.

और किताब के दुकान के बाहर भी कुछ लोग दो लोग अपना--

अ इस दुकान का नाम है अ बार्बर शॉप ये लड़कों के लिए है।